और जो दवाई डाल रहे है ओ ग्रीन कलर की शर्ट पे पे अ पर्पल कलर की शर्ट पहने हुए है और हाथो से दवाई डाल --

ये नवरात्रि के टाइम पर इसकी पूजा की जाती हैये बंगालियों की देवी है।

यहां एक स्टेच्यू खड़ा है और यहां नेम प्लेट पे नाम लिखा हुआ है और स्टेज के ऊपर लाइटे लगी हुई हैस्टेच्यू का हाथ सामने दिखाई--

ये गाड़ी का शोरूम हैयहा वर्ल्ड फेस्टिवल इन्डियन बोर्ड करके लगा हुआ है।

ये डॉग का स्टेचू है और ये पूरा सीमेन्ट से बना हुआ है ये मकान के ग्राउड़ पे बना हुआ है।

ये एक होटल हैं और ये मेन रोड पर हैं यहाँ पर और भी सारि दुकाने हैं और होटल पर बहुत सारे बगोने राखे हुये हैं।

उसके टैंक उसके पीछे पानी की टंकी हुई बनी हुई हैं यहाँ बहुत सारे शटरे हैं और मैं रोड हैं।

ये ग्राउंड के बीच में बना हुआ है और कुछ बोर्ड टाइप के यहां पे दिखाई दे रहा है फ्लैग वाले ।

एक जो हैं झुके हुये है उन्हों ने ग्रीन कलर की लूँगी और वाईट शर्ट पहेने हुये हैं और एक व्यक्ति जीन्स और टीशर्ट पहेने हुये हैं।

यहा पर दो स्टेचू रखे हुए जो की रोड के किनारे हैऔर वो लोहैं के बाउंड्री वॉल से घिरे हुए है और उसके पीछे कुछ झाड़ पेड़ दिखाई दे रहे है।

ये मेँ रोड पर बाइ साइकिल की दुकान हैं यहाँ बहुत सारि बाई साइकिल रखि हुई हैं यहाँ बच्चों की साइकिल हैं और गैर वाली साइकिल हैं।

ये गांव की रोड है यहां रोड के साइड में एक स्टेचू बना हुआ है हरे कलर के रे बॉक्स के ऊपर--

और यहां झाड़ पेड़ लगे हुए है यहां एक कार खड़ी हुई हैऔर एक बाइक खड़ी हुई है यहां पर भी साइड में बिजली के खंभे लगे हुए हैं जिसे तार दिखाई दे रहे है।